लेफ्ट साइड में कुछ कपड़ा टंगा हुआ है।

कहीं कहीं में शैंपू साबुन देने को मिल रही है।

बड़ा बड़ा विंडो भी है।

इस पिक्चर में रूम देखने को मिल रही है।

इस लड़कियां ने अपना अपना बैग पहना हुआ है।

बाइक नजर आ रही है।

पंखा भी लगाया हुआ है वाइट कलर का चेयर भी है।

और इस रूम में बिस्तर भी लगाया हुआ है।

बिस्तर का ऊपर कंबल और पिलो रखा है।

पेपर और किताब नजर आ रही है।

घर को बना रही है।

इसमें दो इंसान को देखने भी नजर आ रही है।

इसमें इंसान बैठने का काफी जगह है।

ग्रीन ग्रीन ग्रास भी है फ्लावर भी है।

इस पिक्चर में दुकान देखने को मिल रहा है।

एक घर का बरांदा में--

आदमी बैठने के लिए बैंच भी बनाया हुआ है।

घर के सामने गच्छी भी दिखाई दे रही है।

बड़ा बड़ा पत्थर को देखने मिला है।

इस पिक्चर में मिट्टी को देखने मिल रही है।

गाड़ी से उसमें बटन भी है।

इस पिक्चर में नाला देखने को मिला है।

एक लड़का का बाल कटिंग करते हुए नजर आ रही है।

इस पिक्चर में रूम को देखने मिल रही है।

पिन और स्विच बॉक्स भी देखने को मिल रही है।

एक पैर देखने को मिला है।

फ्लावर भी देखने को मिला है।